यहां पर हमें फूल दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां एक स्टेशन जैसा दिखाई दे रहा है।

हमें यहां एक गेराज का शोरूम दिखाई दे रहा है।

गाड़ियों के साथ लाल कलर की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

हमें यहां एक सोसाइटी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

काले कलर का गेट भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर हमें एक स्कूल का दृश्य दिखाइ दे रहा है।